इस ग्राउंड में हमें कुछ लोग ग्रुप में फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जगह पर मार्केट में अ ट्रैफिक जाम हो रखा है जहां पर कुछ लोग दिख रहे हैं।

यहां पर हमें एक बड़ासा किला दिखाई दे रहा--

यहाँ पर हमें एक प्राकृतिक वातावरण दिखाई दे रहा है।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

इस इमेज मे हमें एक बहोत सारे पहियों से--

एक कपल का दूल्हा-दुल्हन का एक बहोत ही सुंदर स्टेज दिखाई दे रहा है।

यह स्टेज एक हवेली के पैटर्न में बना हुआ है। जिसे फूलों और लाइट से सजा--

यहां पर हमें एक फन प्लैक्स लिखा हुआ लाइट का येलो कलर का डिजीटल लाइट का बोर्ड दिखाई दे रहा।

इस मेडिकल क्लिनिक के अंदर हमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहे हैं।

और यह सभी वाइट कलर के अजीब अजीब तरीके के इंस्ट्रूमेंट यहाँ नज़र आ रहे हैं।

यह सेक्शन वाइज सीट्स बहोत पास पास की डिस्टेंस पर लगी हुई दिखाई दे रही है।

टीन शेड्स से बनी फैक्ट्रियां एक गोडाउन दिखाई दे रहा है जिसमें की--

रेड कलर की बाल्टीस बकेट्स यहां रखी हुई है।

और इसमें कुछ मटेरियल हो सकता है।

इस रेस्टोरेंट में बहुत सारी बेंचेज हैं लगी हुई।

इस इमेज में हमें एक फिश मार्केट दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है जो की कोई फैक्ट्री हो जैसे ऐसा यहां क्षेत्र हमें नजर आ रहा है।

इस मेडिकल शॉप के अंदर एक बड़ी सी चेयर रखी हुई है एक फ्रिज भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस हॉल में पंखे लगे हुए हैं लाइट्स जली हुई हैं।

और अंदर से इस किले में हमें बहोत सारे पिलर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बॉक्स के अंदर पैक है यहाँ मॉडल एक फैक्ट्री का या किसी कंपनी का दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारे लोग यहां पर काम करते हुए दिख रहे हैं।

इस पिकनिक स्पॉट में एक रेस्टोरेंट छोटा सा कैफेट एरिया टाइप का बना हुआ है जिसमें कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।